सारी गाड़ियां नजर आ रही हैं।

और स्टील की रेलिंग भी नजर आ रही है और जीना भी नजर आ रहा है और एक गेट भी नजर आ रहा है।

यह एक होटल है यहाँ पर उपर टिन डली हुई है।

और ऊपर लाइन भी नजर आ रही है।

यह है एक हेल्थ केयर की दुकान है।

एक हाथ भी नजर आ रहा है।

और उसके अंदर फुल भी नजर आ रहे हैं।

एक औरत भी नजर आ रही है।

यहाँ पर बहुत सारे डब्बे नज़र आ रहे है।

और दो मेज भी नजर आ रही है।

और एक लोहे का जीना भी नजर आ रहा है।

और मोटरसाइकल भी नजर आ रही है।

शीशे भी नजर आ रहे हैं।